यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा हैं जो की सफ़ेद और कत्थई कलर का दिखाई दे रहा हैं और उसका चॅनेल-गेट आधा खुला हुआ हैं बहार एक मोटरसाइकिल रखी हुई हैं और एक कार भी दिखाई दे रहीं हैं।

यहा पर बडी सी नदी दिखाई दे रही है और थोड़ी सी दूर पर कही अधिक घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर एक लोडी सेंटर दिखाई दे राहा है और यहा पर कई लोगो के कपडे भी दिखाई दे राहे है दो व्यक्तीं दिखाई दे रहे है पंखा चालता हुआ भी दिखाई दे राहा है।

क संस्था दिखाई दे रही है और ये काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है। जो संस्था का जो कार्यालय है।

एक कार्यालय दिखाई दे रहा हैं कार्यालय के बाहर कई मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं एक नीले कलर की बाल्टी सी दिखाई दे रही हैं कार्यालय का गेट बंदसा दिखाई दे रहा हैं।

और इधर पर ही काफी लम्बे लम्बे पेड़ है कुछ पत्तियाँ पड़ी हुई निचे दिखाई दे रही है सामने एक मोटर साइकिल भी दिखाई दे रही है थोड़ी सी--

और स्टेज के दाँयें बाँयें साइड पेड़ भी दिखाई दे रहे है और रात का समय है।

एक स्टेज दिखाई दे रहा है जो की अच्छा लग रहा है और यंहा पर तीन तीन लाल कलर की कुर्सियाँ छ रखी हुई है और दो सफ़ेद कलर की रखी हुई हैं। बीच मे एक--

पेड़ो मे जाली लटकी हुई नजर आ रही है लाइट की कई दो तीन खंबा दिखाई दे रहे है।

पे उठी हुई है एक व्यक्ति फोटो क्लिक करते हुए उसकी परछाई दिखाई रही है दाँयें बांयें साइड रोड के बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

पर केक की शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर कई केक दिखाई दे रहे है रखे हुए टेस्टी लग रहे है।

और एक दो मोटर साइकल है और साइड मे कुछ स्कूटी खड़ी हुई है बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत ही बड़ा सा और यहा पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है।

वह सफ़ेद कलर का बड़ा सा कार्यालय सा दिखाई दे रहा है जिसके बहार तीन बैनर लगे हुये है और एक मोटरसाइकिल बहार रखी हुई है।